टेबल अ सोफा लगे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर एक सोफा लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो गुलाबी और सफेद रंग में है।

यह एक सफेद रंग का अस्पताल दिखाई दे रहा है और नीले रंग से लिखा हुआ है सदर अस्पताल गोपालगंज।

मार्क्स लगाया हुआ है यहां पे कुछ स्कूटी और--

भूरा रंग का है कुछ तस्वीरें दीवाल पे लगी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक मेन हाइवे दिखाई दे रहा है और यहां पर--

एक लकड़ी के बॉक्स लिए हुए निकाल रहे हैं।

एक आदमी नें माथा पे काले रंग का टोपी पहना है बैंगनी कलर का कपड़ा पहना हुआ है एक आदमी सफ़ेद रंग का शर्ट पहने नीचे बैठा हुआ है।

और एक बोर्ड पर लिखा हुआ सोनू डेंटिंग पेंटिंग --

स्कूल में एक औरत जो नीले रंग की साड़ी पहने बैठी है।

यह एक कमरा है। यहां पर कांच पे रखी हो कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही है जैसे--

जो हरे काले रंग के है कुछ बच्चे दिखाई दे रहे एक आदमी--

तस्वीर भी दिखाई दे रहा है जो अगरबत्ती में बना है।

दो चेयर दिखाई दे रही है जो लंबे लंबे बने हैं काले रंग के।

और यहां पे लकड़ी से घिरा हुआ है दिखाई दे रहा है एक आदमी जो माथा पर पगड़ी बाने--

यहां पर एक टूटू का तस्वीर बना है एक पुलिस ऑफिसर का भी तस्वीर बना है ऊपर में --